खाली जगा पड़ी हुई दिखाई दे रही है एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमे घास उगी हुई दिखाई दे रही और सामने आसमान दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मे हमे एक चर्च दिखाई दे रहा है चर्च मे प्लस साइन दिखाई दे रहा है जिसमे एक आदमी टंगा हुआ है।

आसपास उसके ये कुछ गमले दिखाई दे रहे है और बोर्ड दिखाई दे रहा है जो लाल रंग का है ऊसपे सफ़ेद रंग के कुछ लिखा हुआ है पीछे दीवार दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मे हमे एक इयरपोट का रेन भी दिखाई दे रहा है और ऊसपे एक सफ़ेद रंग की प्लेन दिखाई दे रही है।

सामने की तरफ खाली मैदान पड़ा हुवा हे जिस मे घास उगा हुवा हे और बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हे। पास मे और भी बिल्डिंग हे और सामने आसमान दिखाई दे रहा हे जो सफेद रंग का हे।

पास मे ही एक खाली जगह दिखाई दे रही है जिस मे कुछ महिलाए दिखाई दे रही उन के सिर पर कुछ रखा हुवा है और सामने आसमान दिखाई दे रहा है जो सफेद रं--

इस इमेज मे हमे एक कोचिंग क्लास दिखाई दे रही है जिस मे एक सफेद रंग और एक ब्लैक रंग का बोर्ड लगा हुवा है।

एक बोतल दिखाई दे रही है जो ऑरेंज और ऑरेंज और नीले रंग की है एक और बोतल हे जो हरे रंग की है पास मे एक और बॅग रखा हुवा हे जो नीले रंग का है।

उन्हों ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुवे है वो नीचे लेटे हुवे है उनके सामने एक गेट दिखाई दे रहा है और एक स्विच बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मई हमे एक आदमी दिखाई दे रहा है। आदमी ने ब्लू रंग की शर्ट पहनी हुए है और उसके हाथ मई एक डिब्बा है। जिसमे कुछ रखा हुआ है।

उसके पास में कुछ कछुए दिखाई दे रहे है और पास मे ही कोई बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है। घास दिखाई दे रही है और पास में खाली जगह भी दिखाई दे रही है।

खाना इस्टील की एक प्लेट में हैं और चम्मच इस्टील की हैं खाने में चावल दिखाई दे रहा हैं सैलड़ दिखाई दे रहा हैं और सब्जी दिखाई दे रही हैं।

सामने एक खिड़की दिख रही है। जिसमे एक काच लगा हुआ है और जो लकड़ी से बनी हुई है। नीचे हे कुछ पड़ा हुआ है। पन्नी दिख रही है।

इमेज मे हमे एक पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा है पेट्रोल पम्प पर एक ट्रक दिखाई दे रहा हे जो सफेद रंग का है एक लड़का दिखाई दे रहा है और --

इस इमेज में हमें एक गाय दिखाई दे रही है गाय का कलर काला और सफ़ेद है गाय के महु में एक रस्सी बंधी हुई है जो --

इस इमेज मे हमे बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग का कलर सफेद हे उसमे कुछ खिड़किया भी लगी हुई है।